शाम का टाइम है शायद।

अं जहां पे की बहोत सारा मशीन दिख रहा है।

वो शायद पार्क टाइप का लग रहा है।